किसी होटल के टेबल दिखाई दे रही है। इस होटल की टेबल उपर एक ब्लैक कलर ट्रे रखी हुई है।

एक बड़ा सा नदी या तलाव दिखाई दे रहा है। ये नदी काफी दूर तक फेली हुई दिखाई दे रही है।

बड़ा सा लकड़ी का सोफ़ा रखा हुआ दिखाई दे रहा है। यह सोफ़ा देखने में बिल्कुल नया लग रहा है।

एक छोटा सा फूलों का गार्डन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कई सारे गेंदे के फूल लगे हुवे है। ये गेंदे के फूल ऑरेंज और येलो कलर के दिखाई दे रहे है। गेंदे के फूल लाइन से लगे हुवे है। देखने मे काफी सुंदर लग रहे है।

ये जलिया जुइग की स्किन पारदर्शी दिखाई दे रही हे। और काटे मुँह भी दिखाई दे रहा हे।

यह काले अंगूर कुछ गुच्छों में दिखाई दे रहे है। अंगूर काफी ज्यादा मात्र में रखे हुए है। और एक बड़े से टोकरी के अंदर रखे हुए दिखाई दे रहे है।